यहां की आसपास की बात करूं तो मुझे एक पोस्टर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं।

और पास में ही ये लोह कि बनी हुई--

इस तस्वीर में मुझे एक व्यक्ति का हाथ दिखाई दे रहा है जिनके हाथों में एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें नाम भी लिखा हुआ है।

किसी की तस्वीर भी दिखाई दे रही है पास में कुछ मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है एक ऑयल टैंक भी दिखाई दे रहा है।

के बना रहे हैं कुछ ड्रम भी दिखाई दे रहे हैं कुछ श्रमित के कट्टे खाली दिखाई दे रहे हैं।

पोस्टर लगा हुआ है इसमें कुछ नाम भी दिखाई दे रहे हैं।

पुरुष कुछ महिले दिखाई दे रई हैं।

इस तस्वीर में मुझे करणी माता का मंदिर दिखाई दे रहा है जो मार्बल से बना हुआ है।

एक मकान दिखाई दे रहा है जिनके ऊपर कुछ छतरें भी दिखाई दे रही हैं लोह की बनी हुई रेलिंग दिखाई दे रही है एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे लमरियों के अंदर--

कुछ फेशवाश क्रीमें वगैरे दिखाई दे रही हैं पास में कुछ कड़ी वाले डब्बे दिखाई दे रहे हैं।

एक मकान भी दिखाई दे रहा है कुछ लोहे के बने हुए थंभे भी दिखाई दे रहे हैं जिनपे लाइट लगी हुई है।

पूल से दिखाई दे रहे हैं जो लोह के बने हुए हैं कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं कुछ छोटे छोटे पत्थर भी नजर आ रहे --

इस तस्वीर में मुझे एक गोल--

एक टेनो की बनी हुई छत दिखाई दे रही है जिसके आगे एक पोस्टर दिखाई दे रहा है जिनके अंदर कुछ रेड कलरो मे नाम ही दिखाई दे रहे हैं।

पास में ही मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसमें गणेश भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है।

एक टेबल दिखाई दे रही है जिसपे कुछ थालियें दीपक दिखाई दे रहे हैं।

इस दुकानों पे एक पोस्टर भी दिखाई दे रहा है जिसमें येलो कलर के नाम दिखाई दे रहे हैं।

पास में मुझे एक डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है एक लट्टू भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं एक व्यक्ति के व्हाइट कलर की शर्ट पहना हुआ है।